ये चित्र में हम सब्जियों का ठेला देख सकते है जहाँ पर बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई है जैसे गाजर--

इस चित्र में हम हम मीटर मीटर देख सकते है बहोत सारे रंग बिरंगे उस पर स्विचेस लगे हुए है और एक तरफ सफेद मीटर एक तरफ--

ये चित्र में हम नीला आसमान और बहुत सारे बादल देख सकते है जो की सफेद दिखाई दे रहे है।

लाइटे भी सफेद रंग की चमक रहे है बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए है और दो आदमी भी दिखाई दे रहे है।

कपड़ा डाला गया हैं जोकि ये पक्का हरा रंग का दिखाई दे रहा हैं और बहोत से धागे भी बंधे हुए हैं।